बोहोत ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जैसा दिख रहा है बहोत अलग-अलग अ तरह के सामने मंदिर बने हुए--

कुछ त्रिकोण आकार के कुछ गोल अकार के कुछ अलग-अलग रंग के कुछ बहोत सारे स्टेचू बना हुआ है कोई भगवान का स्टेचू दिख रहा है पीछे में भी बड़ा सा मंदिर दिख रहा है ऊपर आसमान है बहोत सुन्दर नज़ारा है।

सब के नीचे में कुछ ऊपर मे बड़े टी_वी कुछ नीचे मे बड़े टी_वी साइड़ में छोटे छोटे टी_वी रखे हुए हैं सब टी_वी के बारे में नीचे में लिखा गया है ऊपर में सुपर लिखा है।

वो कंप्यूटर में कुछ देख रहे है बहोत सारे टेबल बड़ा-बड़ा टेबल लगे हुए है बहोत सारे बच्चे है ये आदमी है जो टेबल पे बैठे है जो किताबों में देख रहे है वो लोग कुछ पढ़ रहे है सा आसपास में बहुत सारी किताब र--

म्यूजियम का फोटो लग रहा है जहाँ पे अ एक बॉक्स के अंदर कुछ अलग-अलग बहोत पुराने रकम का चीज़ रखा हुआ है जो की ताला से बंद किया हुआ है।

और दो लड़के दिख रहे है पीछे से जो व्हाइट कलर के शर्ट पहने हुए है बहोत सारे सोफा लगे हुए है सामने में स्टेज पर चीयर बॉक्स है साइट के जाने का रास्ता ऊपर से लाइट लगी हुई है कोई ऑडिटोरियम --

ये कोई खाना का प्लेट दिख रहा है प्लेट का रंग काला है और ऊपर में कुछ खाना सर्व किया गया है जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर हैं।

बहुत सुन्दर से प्रेजेंट किया गया खाने को जिसके उपर खाने के उपर कुछ चटनी डाली गई है और साइड मे भी हरा रंग का चटनी और फूल से कुछ सजाया --

बिल्डिंग बहोत ही लंबा है और ऊपर से कुछ पेड़ भी है और साइड का रंग किया हुआ भी नहीं है।